यहां पर एक इमरजेंसी बटन भी लगा हुआ है।

सुरेंद्र मोहन सिंह चावला लिखा हुआ है।

यह एक कॉलेज है। सामने खिड़कियां है।

यहां अलग अलग कलर के कपड़े हैं।

यह एक हॉस्पिटल है यहां पर पेड़ खड़े हुए हैं।

यह सड़क है यहां पर पेड़ लगे हुए है।

ऊपर छत में लाइट और पंखे लगे हुए हैं।